और कुछ लड़के लाइन वार खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

दे लगे हुए दखाई दे रहे है।

और कुलर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमे एक पैलेस दिखाई दे रहा है है जिसको--

इस पिक्चर में हमे एक कॉलेज दिखाई --

इस पिक्चर में हमें एक पैलेस --

इ रहा है जिसमें सोफे और टेबल भी लगे हुए--

दिखाई दे रही हैं और टेबल पर टिशू पेपर पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

अ पिक्चर में हमें एक कलोनी दिखाई दे रही है कलोनी की--

इस पिक्चर में हमें एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसके पास--

एक करेक्शन दखाई दे रही है।